बगल मे बहुत बड़ा ग्राउन्ड है ग्राउन्ड मे छोटे छोटे घास है।

दूर दूर पर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़े दिख रही है यहाँ पे बहुत सारी इटे रखी हुई है।

जो भी खिड़कियां खुली हुई है खिड़कियों के सामने शीशे लगे हुए हैं और ऊपर में दराज बना हुआ है दराज का ।

यहा प र तीन आदमी है पीछे में कुछ चल रहा तो ये खडे है उपर में लाइटे लगी हुई है पीछे में फुल टंगे हुए है।

ये आदमी गमछा भी लपेटे हुए है ऊपर से लगाए है एक आदमी हाथों पर ।

बहत सारा कपड़ा लगे हुए है बहत सारे कपड़ा रखे हुए है में भी बहत सारा सामान रखे हुए है।

नीचे में एक रेलिंग भी है पीछे में बहत सारा पीछे में बहत कुछ बना हुआ है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग है उसपे लिखा हुआ है आगे मे बहुत सारे टेबल लगे हुए है।

आगे मे रोड भी है रोड पे एक आदमी भी नहीं चल रही है।

पीछे मे एक पहाड़ है जो कि बहुत गहरा पहाड़ दिख रहा है।

यहां पे बहोत सारे दुकाने हैं। जिस दुकान पे लिखा हुआ है वर्मा ऑप्टिकल्स ।

यहाँ पे रोड है रोड मे बहुत दूर रेलिंग्स लगे हुए है बगल मे बहुत सारे पेड़ भी है।

उपर बादल लगा हुआ है बादल आसमान नीला कलर का है बगल में खेत हो रही है जिसमे छोटे छोटे धान वगेरा रोप गये है।

इसमे छोटे छोटे पाइपे लगी हुई है यहाँ पे छोटे छोटे इटे भी रखे हुए है बगल मे।

ऊपर से टीवी लगी हुई है ऊपर मे कुछ नहीं है खुला हुआ है।

घर येलो कलर से पेंट कि गई है ऊपर में रेलिंग्स भी दी गई है।

रेलिंग से बहोत बढ़िया डिजाइन किया है गेट है जो की रेड कलर से पेंट किया गया है बगल में बाउंड्रीया लगी हुई है।

होल बॉडी फिफ्टी स्लाइस थ्री टी_टी सिटी स्कैंस बगल में डॉक्टर अंबरीश राजा लिखा हुआ है।

यहाँ पे रोड है रोड पानी मे डूबा हुआ है बाड़ आया हुआ है उस तरह से उसपे--

यहाँ पर एक भैंस शाला है जिसमे बहुत सारी भैंसे है जो काले कलर की है।

गमले बहोत सारी डिजाइनों के गमले इसमें रखे हुए हैं यहां पे गमले रखे हुए हैं बहुत सारे जिसमें छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

यहां पर खिड़कियां लगे हुई है खिड़कियां में बहोत सारे शीशे लगे हुए पीछे में बहोत सारी घासे दिख रही है।

यहाँ पे रूम बनी हुई है इस रूम मे बहुत सारे बैठने वाली रखी हुई है।

यहां पर एक रैक बनी हुई है जिसमें ऊपर से बहोत सारे कपड़े के बंडल्स रखी हुई है नीचे भी रैक है जिसमें पतले पतले कपड़े रखे हुई है।

गमला भी लगा हुआ है बीच मे थोड़ी सी जगह खाली है।

यहां पे एक बतख है दो गमले रखे हुए हैं यहां पे एक जाली भी रखी हुई है।

बगल मे एक पड़तन भी है दो घास लगे हुए है यहाँ पे एक पन्नी है।

बगल मे नदी का पानी है पीछे मे और भी बहुत सारे पेड़ है।